इस इमेज में एक पुरानी सी स्कूल जैसी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की तीन मंजिल नज़र आ रही हैं।

इस इमेज में एक परचूनी की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें बाहर की तरफ कुछ बोरियां एक कट्टा रखा हुआ दिखाई दे रहा है और इस तरफ एक लाइन से चावल जैसे चावल और गेहूँ जैसे कट्टे लाइन से लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। उस पर एक व्यक्ति --

यहाँ दो रस्सी से बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं इसके पास में कुछ कट्टे में भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में एक बूढ़ा व्यक्ति रोड पे लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में एक छतरी भी है।